यह एक पार्क का दृश्य है पार्क में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं।

एक बच्ची झूले पे झूलने जा रही हैं और एक लड़का लड़की को जबरदस्ती ले के जा रहा है।

ऊपर एक बहोत सुंदर झुमर लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

यहां दो स्ट्रीट लाइट भी दिख रहा है।

वॉल के ऊपर दो सिन्हरी सेम टंगा हुआ हैं।

यह एक राज्य पथ परिवहन है यहां पर।

यह दृश्य एक बस स्टैंड का है यहां पर दो बसें दिखाई दे रही हैं।

बगल में स्क्वायर शेप में एक ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है।

यह एक मुर्गी फार्म है मुर्गी फार्म में बहुत सारे मुर्गी तीन स्तर पर दिखाई दे रहे हैं।

स्क्रीनिंग के सामने दो तल्ले बिल्डिंग है।

यह एक सड़क का दृश्य है सड़क पर बहुत सारी कार मोटरसाइकिल बाइक जा रही हैं।

बिजली के खंभे के पास ऑयल का प्रचार हो रहा है वहां पर दो तीन बाइक लगे हुए हैं।

रेफ्रिजरेटर में दो तरह के केक दिखाए गए हैं।

इसमें बहोत सारे क्रीम बन भी रखे हुए हैं।

कुछ फ्रूट्स के शॉप है कुछ ग्रोसरी के शॉप है।

यह दृश्य नर्सरी का दिखाई पड़ता है।